देख सकत हे एने हर ये ह राधा देश रंगीला चिकित्सालय लिखल हे जशपुर छत्तीसगढ़ कथे क देख सकत ह अउर खिड़की मन हे बग--

देख सकत ह देख सकत ह पूरा टॉयलेट बने ह देख सकत ह।

पत्थल मन दिसत हे घास मन दिसत हे एकदम मोटका मोटका गच मन हे पुलिया मन हे देख सकत हो और ओरे मन हे एहा का का मन दिसत हे।